यहाँ पे एक उम्म बड़ा नदी है। नदी के पानी के पास जा रही है जो जाता है --

और बोहोत सारा मंदिर भी है। मंदिर भी बोहोत सारा है सीढ़ी भी हैं वहाँ पे पूजा भी हो रहे हैं।

वहाँ पे आदमी भी है तीन मंजिला घर है। अच्छा लग रहा है देखने के लिए।

यह एक मंडप है | मंडप में भगवान भी है वहाँ पे बहुत सारा फूल भी लगे हुए हैं केले के गाछ भी लगा हुआ हैं बहुत सारा आदमी भी है वहाँ पे घर भी दिखाई देते हैं एक पेड़ है बहुत बड़ा पेड़ है दिखाई जाते हैं हमको |